इस चित्र में एक चर्च के बाहर की तस्वीर दिखाई गई है।

वहां पे बहोत सारे सर्विस का सामान रखा हुआ है।

एक पेशेंट चेयर और एक डॉक्टर चेयर लगी हुई है।

एक ब्लू कलर की डस्टबिन रखी हुई है।

इस चित्र में एक मैदान दिखाया गया है।

एक थाल में पत्ते रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक मार्केट प्लेस की तस्वीर दिखाई गई है।

और इसके इर्द गिर्द बहोत से घर नजर आ रहे हैं।

पीछे खेत नजर आ रही है।

ईट रखे हुए हैं छत पे बालू है।

इस चित्र में कोयल रिवर की मरीन ड्राइव की चित्र दिखाई गई है।